यहां पर बहुत सारे फूल दिख रहे हैं।

और लोहे के टुकड़े भी दिख रहें हैं।

और दीवारें भी दिखाई दे रही है दीवार पर ए_सी लगा हुआ है विंडोज भी दिख रही हैं।

बड़ी बड़ी विंडोस दिखाई दे रही हैं विंडो के बाहर डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

पोधै भी दिखाइ दे रहे हैं और लकड़ी का जंगला भी दिखाइ दे रहा है।

छत दिखाई दे रही है छत पर लाइटस दिख रही हैं और बहुत सारे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं।

एक पत्थर दिखाई दे रहा है उस पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने सर पे कैप लगाई हुई है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है टेबल में ब्लू कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे--